यहां पर एक कार वाशिंग एरिया दिख रहा है जहां पर एक कार खड़ी है वाश होने के लिए।

जहां पर बहोत सारी कारें और मोटरसाइकल खड़ी हुई हैं।

अलग अलग तरह के छह झंडे लगे हुए है।

लोगों की भीड़ लगी हुई है।

छोटे छोटे पानी के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य है एक बहोत बड़ा शेर दिखाई दे रहा है।

कुछ पीले कलर की मशीनें भी--

जिस पर एक सोफा रेड कलर का रखा हुआ हैं।

यह एक फैमिली रेस्टोरेंट का दृश्य है।

एक लड़की के हाथ में चाय का कप है।

ये रिचार्ज और फोटोकॉपी की दुकान है जहां पर सब ऑनलाइन --

जहाँ पर दो तीन टायर टंगे हुए हैं।

एक बड़ा सा टावर दिख रहा है खूब सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे ट्रैक्टर खड़े हैं।